इस फोटो में मुझे एक जू दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक मेडिकल दिखाई दे रही है।